मछली की दुकान है बहुत सारी मछली रखी गयी है एक औरत बैठी है जो फ़ोन से बात कर रही है सामने एक सामने छोटा- सा लड़का बैठा हुआ है नीचे पी नीले रंग की पन्नी बिछाई गयी है बगल में भैया की दुकान है दो ही कैरेट रखे गए है छोटा- सा काउंटर हैं।

ये एक एरोप्लेन है सफ़ेद अउ नीले रंग के कुछ आदमी खड़े है जो में के हरे रंग के कपड़े पहने हुए है सफ़ेद और नीले रंग आसमाने पर्स किया गया हैं।

जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है ओटी में पर्दे लगी हुई है सफ़ेद रंग की और नीले रंग सफेद हरे रंग का है।

सामने एक बड़ी- सी शार्क रखी गयी है जो काफ़ी बड़ी शार्क है पीछे साइड एक ऑटो आ रही है जो पीले रंग की काँच लगी हुई है एक सामने से आदमी आ रहा है जो --

एक टाइल्स लिए जा रहा है छोटे से ट्रेक में कुछ रखे है सफ़ेद रंग का आसमानी रंग की पट्टी है।